और मैदान के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और मैदान बहुत सुंदर और बहुत बड़ा हैं।

पैर के नीचे बहुत सारा पाइप --

मैं देख पा रही हूं है और इस पहाड़ी एला --

पहाड़ में बहुत सारा पेड़ पौधे हैं और पहाड़ के बीचों बीच झरना बहे आ रहा है बहुत ही सुंदर नजारा --

लग रहा हैं टुरिस्ट प्लेस हो बहुत ही सुंदर --

दो करके वो नाव में बैठे हुए हैं बहुत ही सुंदर --

बहत सारे ए स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं चेयर में और --

रहे हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा है जो पिंक कलर और व्हाइट कलर का मिक्स करके बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है।

जो है उसका रंग काला है और गला में पट्टी बांदा हुआ है और बहुत सुंदर --

जैसा मैं देख पा रही हैं यह सुबह का समय है सामने बड़ा सा नदी है नदी में नाव है नाव के पास में दो व्यक्ति खड़े हैं।

और यहां पे बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है नदी के उस पार खुला सुखा जगह है और ऊपर खुला।

गाड़ी ए जा रहा है रास्ता में है घर भी है बहुत ही अच्छा नजारा --

घर है बड़ा सा सुंदर सा सामने बड़ा सा सीधी है और बहुत है।

शाम का समय है और ये रेस्टोरेंट है बहत सुंदर सा समझाया गया है लाइट --

सामने जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक अ बड़ा सा अ रास्ता है वहां पे बहुत भीर है।

और पौधे हैं बहुत सारा म छोटे-छोटे पौधे हैं और वहां प दिख रहा है कि ये बहुत अ --

जैसा की में देख पा रही हूं ये सुबह का समय है और सामने बड़ा सा जगह है जहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ है उसके बाद नदी है।

पा रही हूं ये सुबह का समय है सामने घर है और यहां पे हम् ग्राउंड है जहां पे --

मैं देख पा रही हूं यह समय का समय है और सामने चिड़ियाघर है चिड़ियाघर में बहुत सारे पेड़ हैं और सामने --

इस एयरपोर्ट में लोग बैठे हुए हैं और टिकट काउंटर में खड़े हुए हैं।

खुला जगह है साफ है खाली है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये शाम का समय है सामने रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट का अंदर का फोटो लिया --

मैदान का चारों तरफ बिल्डिंग है पेड़ है और बहुत ही सुंदल --

स्नेक्स मिल रहा है बहुत ही अच्छा जगह मैं दुकान है दो बाइक स्कूटी खड़ा है और यहाँ पे बहुत अच्छा --

जैसे मैं देख पा रही हूं ये शाम का समय है और ये एक सुंदर सा घर है जो --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह सुबह का समय है सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसका नाम है प्रेरणा उसके सामने बहुत सारा जगह है।

हो रहे है बीच की तरफ और ये बहुत सुविधा हुआ है और चारों तरफ पेड़ है बहुत सुंदर नजारा --

बिल्डिंग के नीचे गाड़ियां पार्किंग हुआ है स्कूटी भी पार्किंग हुई है बहुत ही सुंदर साफ और खुला जगह मैं ये बैंक है और बहुत अच्छा लगा हैं।

और एक लेडी वहां से आ रही है और बहुत बैठे हैं।

बहत ही अच्छा जगह में ये मार्केट है बहत अच्छा लग रहा है।

ऐसे में देख पा रहि हु एक सुंदर सुबह का समय है सामने एक नदी है नदी के चारो तरफ --